खंडर के बाहर की तरफ छोटी छोटी जगहों पे घास लगी हुई नजर आ रही है।

खंडहर के ऊपर की तरफ आसमान दिखाई दे रहा है जो सफेद रंग का है।

इसके आसपास पीले रंग की दीवार उठाई गई है।

घर के आस पास बहोत सारे पेड़ लगे हुए दिखाइए दे रहे हैं।

इस तस्वीर में हमें बहोत बड़े पत्थरों के पहाड़ दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में हमें बहुत सुंदर और बड़ी सी ट्राफीज की शॉप दिखाई दे रही है।

जिसमें बहोत सुंदर सुंदर बड़ी बड़ी ट्रॉफी रखी हुई दिख रही है।

इस तस्वीर में हमें एक बहोत बड़ा तालाब दिखाई दे रहा है।

होटल के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर होटल स्वागतम फैमिली रेस्टोरेंट लिखा हुआ है।

नदी के साइडों में बहुत सारे पेड़ बने हुए हैं।

एक ये सामने की तरफ घर बने हुए भी नजर आ रहे हैं।

इस तस्वीर में हमें तीन बच्चे जमीन पर योगा करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

जहां पर बहोत सारे आदमी खड़े होकर शपथ लेते हुए नजर आ रहे हैं।

इसकी दीवारों पर बहोत सुंदर सुंदर लाइट्स लगी हुई नजर आ रही।

तस्वीर में हमें एक बहोत बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है जो सफेद रंग का है।

हरमोनियम के साइड में एक बॉक्स रखा हुआ है जो कि ब्राउन कलर का है।

एक खाली सड़क बीच से जाती हुई दिखाई दे रही है।

तस्वीर में हमें बहुत सुंदर सा समुद्र के पास नजारा दिखाया गया है।

तस्वीर में हमें एक बियर की शॉप दिखाई दे रही है जो कि सफ़ेद रंग की है।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

बिल्डिंग के साइड साइड में ग्रिल्स लगी हुई दिखाई दे रही है।

जहां पर एक फ्रिज है जिसके ऊपर बॉटल्स रखी हुई दिखाई दे रही है।

जहां पर साइडों में टेंट लगा हुआ नजर आ रहा--

इस तस्वीर में हमें मच्छी मरी हुई टेबल पे रखी हुई दिखाई दे रही है।

बिल्डिंग क्रीम कलर की है। बिल्डिंग के बाहर की तरफ बांस-बांस से डंडे लगा र --

आस पास जमीन पर कुछ घासे और पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

टेबल के ऊपर हीरो होंडा रिपेयरिंग लिखा हुआ है।